इस फोटो में ये एक कोई तलाब है।

इस फोटो में ये कुछ स्कूल की बच्चियां है यें सभी का ड्रेस पहनी हुई है और ये कुछ खेल खेल रही हैं।

जोकि चेरी बेरी हैं साइड में ये पेड़ पौधे भी हैं वो भी अच्छे हरे भरे है।

ये एक मंदिर है इस मंदिर मे ये भगवान की मूर्तियां दिखाई दे रही है।

ये एक कोई नाई की शॉप है जिस में ये तीन चार व्यक्ति खड़े हैं एक व्यक्ति है जिसकी कटिंग कर रहे हैं एक व्यक्ति।